एक जंगल का दृश्य है जिसमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है और वो जो कि बिना पत्तियों वाला है।

बहोत ही सुन्दर गाजीपुर का गाजीपूरी जो प्लेस है घुमने के लिये जाईये आप भी --

यहाँ का जो दृश्य बड़ा ही सुवहाना ऐसा लग रहा जैसे छब्बीस जनवरी का सजावट का दृश्य हो तिरंगा कलरिंग हैं।

ये एक कलोनी सा दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बाइक्स खड़ी हुई दिखाई दे रहीं --

यह कोई ऑफिस सा दिखाई दे रहा है। जहां पर नीचे बाइक्स पार्किंग की गई है जो की काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ऊपर --